इस फोटो में यह एक गारमेंट्स की दुकान है।

सभी व्यक्तियों के हाथ में गन है और वेह सामने निशाना लगा रहे हैं।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिसमें बहुत सारी कन्याएं बैठी हु--

कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं सामने सफेद रंग की लाइट लगी--

कन्याओं के सामने खाली बर्तन रखे हुए--

बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है इसमें दो मोड़ें रखे हुए है बेंच पड़ी हुई है उनके प पीछे--

कुर्सी रखी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

इसमें शीशे लगे हुए हैं एक स्लैब बनाई हुई है स्लैब में नीचे खाने बनाए हुए हैं जो खिड़कियों से लगाए गए हैं।

और मकान के सामने बहुत ही सुंदर गमले रखे हुए हैं जिन गमलो में हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं।

इस फोटो में यह एक गारमेंट्स की दुकान है और कॉस्मेटिक की दुकान--

एक क्रेट में एक थोड़ी सी फिश रखी हुई है नीचे एक चादर बिछी हु--

इस फोटो में यह किसी स्कूल का नजारा है यह स्कूल में बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई--

इस फोटो में यह एक छत का नज़ारा--

इस पर बहुत से सरिए ऊपर भी खड़े हुए हैं।

इ-इसमें दो कमरे हैं। दोनों कमरों में लाल रंग का गेट लगा --

के ऊपर एक पानी का टैंक रखा हुआ--

दीवार के नीचे गमले रखे हुए हैं।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

एक में प्रसाद रूपी फल रखे हुए हैं।

दिवार पर पेंटिंग बहुत अच्छा पेंट हुवा हुआ है।

रूप फर्नीचर माल रखा हुआ है या एक फर्नीचर की दुकान है।

बिल्डिंग पर मेहंदीयां कलर का पेंट हुआ हुआ है उसमें शीशे लगे हुए--

एक गेट लगा हुआ है गेट के बाहर जाली का गेट लगा हुआ --

भी है बिल्डिंग बहुत ही सुंदर तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है।

बिल्डिंग पर सफेद रंग का पेंट हुआ हुआ है उसके पीछे एक दो मझली बिल्डिंग बनी--

इस होटल में एक काउंटर लगा हुआ है काउंटर को के ऊपर बहुत सारा सामान रखा--

आकृति अभी रखी हुई है दीवारों पर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनाई--

और कुछ लोग नीचे राइडिंग कर रहे हैं कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं कुछ लोग नीचे जा रहे --

इस फोटो में यह एक मस्जिद--

एक बिल्डिंग पर लिखा हुआ है ट्रामा सर्जरी चौबीस घंटे इमर्जेंसी विनायक हॉस्पिटल एवं ट्रामा सेंटर डॉक्टर निखिल तरा--

इस पर लिखा हुआ है अर्बन टाऊनशिप शामली।

मकान पर चारों तरफ से सीलिंग हो र हो रखी है।

इनमें सीलिंग हुई है दीवार पर एक फैन रखा हुआ है।

जो अपने रोड मैप पर खड़ी हुई है जमीन मर टायर धसे--

पहाड़ियो के पीछे पेड़ खड़े हुए हैं पेड़ बहुत ही हरे भरे पेड़ है यहांपर--

ऊपर छत पर छोटे छोटे गुब्बारे लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक मकान बना हुआ--

पहाड़ी पर छोटी छोटी हरी घास जमी हुई है और कुछ थोड़े बड़े पेड़ खड़े--

नीचे मैदान है जिसमें मैदान में छोटी छोटी हरि अ हरियाली नजर आ रही--

किसी गुड़िया ने गोल्डन कलर के कपड़े पहने हुए हैं तो किसी ने रेड कलर के पहने --

उसको बहुत ही सुंदर फूलों से सजाया गया है। इसकी बहुत अच्छी तरीके से बाइंडिंग --